बड़े धूम-धाम से लोग मूर्ति के पूजा करते हैं बहोत भींड़ होती है।

ट्रेन रूकती है लोग रेलवे स्टेशन में ट्रेन चढ़ के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं।

अ प्रे करने और यहां पे लोग कैंडल जलते हैं मोमबत्तियां जलाते हैं और बहुत भीड़ होती है।

लोग आते हैं खेलने यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल हॉकी --

खेलते हैं दौड़ते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं।

और यहाँ पे बोहोत अच्छी भोजन कराई जाती है। लोग यहाँ पे दूर-दूर से आते हैं।

और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ईलाज कराने ।